ये सोसायटी का पार्किंग एरिया है जहाँ पे बोहोत सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी है। और ये पार्किंग एरिया बहोत ही बड़ा है ताकि किसी को भी--

ये जगह माहाबोधि रिसोर्ट के बाहर की जगह हैं जो की बहुत बड़े खुले लॉन की नज़र आ रही हैं यहां पर छोटे-छोटे पेड़-पौधे उगे हुए हैं बीच से एक फाउंटेन बना हुआ हैं जो की लंबा हैं।

ये राम शीला पहाड़ के ऊपर का जगह है जहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है और वहा पे भगवानजी की पूजा भी होती है इसके आस - पास सिर्फ पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे है।

यहाँ पे एक फील्ड खेत नजर आ रहा है जहाँ पे बहुत सारे अनाज उगे हुए हैं।